ग्रीन कलर भी दिखाई दे रहा है पिंक पर्पलस में भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसमें वाइट कलर पोता हुआ है। बहुत सारी सीढियाँ दिखाई दे रही हैं।

खम्मा दिखाई दे रहा है। एक वाइट कलर कार दिखाई दे रही है। आसमान दिखाई दे रहा है। पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक दुल्हन एक दूल्हा दिखाई दे रहा है और भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कैमरा दिखाई दे रहा है सजावटी दीवार दिखाई दे रही है।

यहां पे कमल का फूल दिखाई दे रहा है और भी कमल के पौधे दिखाई दे रहे हैं कचरा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार पे व्हाईट पेंट पुता हुआ है। उसकी छत पे भी व्हाईट पेंट पुता हुआ दिखाई दे रहा है।

ब्लू रेड ग्रीन ब्लैक ऑरेंज पर्पल लाइट येलो मेहंदी कलर दिखाई दे रहा।

यहाँ पे बहोत सारी ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही हैं ब्लैक कलर की जिनपे येलो कलर की बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

बाईट ग्रीन कलर की दिखाइ दे रही है। बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

आसमान दिखाई दे रहा है सीमेंट की कुर्सियाँ दिखाई दे रही है हरा घास दिखाई दे रहा --

यहां पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसकी दीवारो पे क्रीम कलर पुता हुआ है उसकी कांच की खिड़कियों पे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है।

बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ऐसा लगा गाड़ियां दिखाई दे रही है एक रेड कलर का ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है।